साथ दो मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है नीचे की तरफ खिड़कियां गेट है लगी हुए दिखाई दे रहे हैं।

दे रहे हैं सामने जो है हरे र पेड़ पौ लगाये गये हैं।

एडी सीट के घर बने दिखाई दे रहे के तरह।

ये लोआ ओआ बिछा हुआ दिखाई दे रहा है सामने कि ओर--

कि त पंखे वंखे लगे हुए दिखाई दे इधर कांच शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े पहाड़ वाहड बने दिखाई दे रहे--

पूरा जंगल एरिया बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें।

इधर कुर्सी और स्टूल में इंसान बैठे हुए दिखाई दे रहा आजू बाजू--

अच्छे अच्छे चीजें रखी दिखाई दे रही दिवालें व्हाइट कलर से पुती हुई दिखाई दे रही सामने--

नदी के बीचों बीच डैम बनाया गया जिसमें पानी इस पार से उस पार आता जाता हुआ दिखाई पूरा जंगल एरिया --

हरे भरे पेड़ पौधे हरी घास फूस लगी दिखाई दे सामने को--

मुझे इस फूलों के सामने ऑफिस है हरे भरे पेड़ पौधे--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारी मूर्तियां बनी दिखाई पटरों पटरों मे से टाय टाय मूर्तियों में से--

दिन का समय दिखाई दे रहा है। आजू बाजू बनी हुई दिखाई दे रही है। सामने की--

दो दुकान दो एक हॉल टाइप का बना हुआ दिखाई जिसमें शटर के बाहर कल्टीवेटर --

टी_ए_आर_सी_टी_ओ_आर_एस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दिन का समय दिखाई दे रहा नीचे की ओर टाइल्स वाइल्ज लगी हुई दिखाई दे रही हैं सामने को टाइल्स लगाई गई हैं।

धान काटने काफी सारी चीजे रखी हुई दिखाई दे रही है। लोहे के सामने की ओर--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर सीढ़ियां बनी हुई दिखाई दे रही है

मुझे इस फोटो में सामने क्योंकि सारे--

बारिश का मौसम बना हुआ दिखाई दे रहा है सामने की ओर--

मुझे इस फोटो के सामने एक लाइब्रेरी बनी हुई दिखाई दे रही है नीचे के टेल्स लगायी गयी सामने लाइटिंग वाईटिंग जलते हुए दिखाई दे र --

दिवाले में फोटो दिखाई दे --

दिन का समय दिखाई दे रहा वाइट कलर के बादल वादल--

इधर घर बनाए गए हैं जो दिखाई दे रहा है सामने।

बादल वादल बढ़िया दिखाई दे रही है सामने न डाल साल रखेगी--

इस फोटो में सामने की ओर दीवालें पुती दिखाई दे रही --

उल्टे भागते हुए दिखाई दे रहा था एक ए_टी_एम बना हुआ ए_टी_एम पैसे निकालते दिखाई दे रहा बछले की लाइटिंग लगाई गई--

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं घास सामने--

कैसा दिन का समय दिखाई दे रहा है सामने की ओर--

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक मोबाइल की सॉप खुली हुई दिखाई दे रही है।

हर कंपनी के डिजाइनिंग हर मॉडल के मोबाइल रखे हुए दिखाई दे रहे--

कुछ कलर की लाइटिंग वाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही हैं इस कम--

लगेज दिखाई दे किसने घर बनाए गए

मुझे इस फोटो में सामने की ओर दिवाले पुटी हुई दिखाई रही ऊपर एक ओ --

जद एक रूम डेकोर है रूम में कैसे दी दीवाल में डिजाइनिंग बनाई गई व्हाइट क --

एक बेंच बनी दिखाई दे रही है सामने--

सामने पत्थर समान दिखाई दे सामने के पीछे हरे भरे पेड़ पौधे लगाए--